यह बहुत सारी घर हैं। यहाँ पर चद्दरें भी हैं। यहाँ बहुत सारी पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ बहुत बड़ा खेल का मैदान है और यहाँ आस-पास बहुत सारे डंडे लगे हुए है।

यह एक रूम है जिसमें अलमारी बनी हुई है यह अलमारी कत्‍थई और हल्के भूरे रंग की है।

यहाँ पर कुछ लाइट के खंभे भी लगे हुए हैं जिनमें तार जुड़े हुए हैं यहाँ एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां कुछ खेत जैसी भी दिखाई दे रहे है इनमे एक जैसी फसल दिखाई दे रही है यहां बीच में एक पेड़ भी लगा हु --